मुझे यहां पे एक पिच दिखाई दे रही है पिच के ऊपर स्टंप दिखाई दे रही है जो तीन स्टंप रखी गई है सामने दो स्टंप दिखाई दे रही है।

ब्रेड के भी बहोत सारे पैकेट दिखाई दे रहे हैं कुछ भुजिया के पैकेट --

उसके पास एक टेबल पड़ी है जिसपे एक कुछ रखा हुआ है एक बोतल रखी गई है पास में एक कुर्सी डाल के एक आदमी बैठा हुआ है।

पीछे आदमी खड़े हुए है वो छोटी-छोटी मछलियां भी बहुत दिखाई दे रही है कुछ कटी हुई मछलियां दिखाई दे रही है पकी हुई मछलियां दिखाई दे रही है कुछ आदमी --

यो थोड़ा ग्राउंड सा नजर आ रहा है ग्रिल पड़ी है जे_सी_बी से दर्ढ्ढा खोदा जा रहा है दर्ढ्ढा का फिर उढां खोदा गया --

एक साइड में दुकान है जिसका सेंटर बंद पड़ा हुआ है एक आगे पोस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें बच्चों का रिजल्ट दिखाई दे रहा है एक पीछे टावर दिखाई दे रहा है।

पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है आगे ग्राउंड बाग बगीचा सा दिखाई दे रहा है जो बहोत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है।

नजर आ रही है कुछ आदमी निकल रहे है कुछ आदमी उतर रहे है कुछ आदमी चढ़ --

छोटे छोटे कपड़े पहन रखी है एक थैली दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की एक पर्स दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।

पीछे पेड़ पौधे दिखाई दे रे है कुछ सामान भी दिखाई दे रहा है जाती हुई ट्रेन गुजर रही है कु टेबले ल --

एक कचड़ा बॉक्स रखा गया है जिसमें कचड़ा डाला जाता है एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो थोड़ा दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां रेत का टीला सा दौरा सा नज़र आ रहा है जिसमें पेड़ पौधे लगे हुए है कुछ झोपड़ियां बनी हुई है जिसमें--

कुछ साफे दिखाई दे रही है पास में ही एक काउंटर लगा हुआ सेंटर दिखाई दे रहा है काउंटर में देखो --

मुझे यहां एक बहुत रेड कलर का और वाइट कलर का गुलाब दिखाई दे रहा है जो बहुत ही सुंदर गुलाब है।

नीली कलर के पत्ते दिखाई दे रहे है खंभा सा दिख रहा है एक बास सा दिखाई दे रहा है जो खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है क्या खूबसूरत --

यहीं पर वायर लगे हुए हैं झंडी लगी हुई है पीछे आसमान दिखाई दे रहा है बहुत ही खूबसूरत कुछ --